बड़ा हॉल दिख रहा है।

मोट्स में वाइट वाइट लाइट्स लगी हुई है।

पर मुझे एक रूम दिख रहा है।

और रजाया रखी हुई है।

यहां पर बहुत सारे आदमी चल रहे है।

पर एक स्टैचू भी है और यहां पर बहोत सारे बोर्ड्स भी लगे हुए हैं।

जहां पर बहुत सारी गाड़ियां इधर-उधर चल रही है।

पर मुझे ये एक बहोत बड़ी साड़ियों की शा--

और यहां पर बहुत सारी गाड़ियां भी है।

यहाँ पर मुझे एक एरिया दिख रहा है।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

और यहाँ पर एक पक्षी भी नजर आ रहा है।

और यहां पर बहुत सारी लाइटिंग्स भी--

बहोत बड़ा हॉल नजर आ रहा--

पर एक जाली भी देख रही--

और यहाँ पर बहोत सारे बड़े बड़े घर भीं नजर--

पर मिरर के खिड़कियां भी बनी हुई है।

पर मुझे एक हॉल दिख रहा।

यहां पर मुझे एक टेंपल दिखाई दे रहा।

लोग भी खड़े हुए हैं।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

सारे लाइटिंग्स भी लगी हुई है।